ये कोई पार्क का जगह लग रहा है जहां पे--

टीचर्स बैठे हैं ऐसा लग रहा है कोई अह प्रोजेक्ट वगैरह भी इन्होंने लगा रखा है समझाने के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल --